यहा कुछ ऑफिस वगेरा है जहाँ कुछ सर लोग कुछ टीचर लोगो को कुछ दे रहे हे और बहुत से--

और उसके सामने सीसा लगा हुआ हैव्हाइट कलर का और ऊपर लाल कलर से डेकोरटे किया गया है नीचे सीडियों मे काले के काले कलर का मारवाल लगा हुआ है।

एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जो अह उम्म खताई कलर की टीशर्ट पहने हुई है और नीले कलर की जिन्स पहने हुई है और ये तीन का समय है सामने में और कुछ सामान दिख रहा है।

सामने में एक बड़ी सी मीनार नजर आ रही है जो कि कुछ गेरू कलर से और कुछ सफेद कलर से डेकोरेट किया गया है और जो कि आसमान नीला नजर आ रहा है।

यह एक मंडप सजाया गया है जहाँ खुबे गुलाबी और सफेद कलर के बलूनो से उसका गेट बना दिया गया है जिसमे कुछ हैप्पी इ लिखा गया है।